scilab प्रयोग करके file handling पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम निम्न के बारे में सीखेंगे:
* इनपुट फंक्शन
* आउटपुट फॉर्मेट करना
* फंक्शन सेव करना
* फंक्शन लोड करना
प्रदर्शन के लिए मैं संस्थापित scilab वर्शन 533 के साथ उबन्टु लिनक्स 1204 ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोग कर रही हूँ
आपको scilab की बुनियादी जानकारी होनी चाहिए
यदि नहीं तो साइलैब पर सम्बधित स्पोकन ट्यूटोरियल्स के लिए कृपया spoken hyphen tutorial dot org पर जाएँ
input फंक्शन यूज़र से इनपुट लेने में उपयोग होता है
यह यूज़र इनपुट के लिए टेक्स्ट स्ट्रिंग में प्रॉम्प्ट प्रदान करता है
यह कीबोर्ड से इनपुट के लिए इंतज़ार करता है
यदि प्रॉम्प्ट पर कैरेज रिटर्न के आलावा कुछ प्रविष्ट नहीं किया जाता तो इनपुट फंक्शन एक खाली मेट्रिक्स रिटर्न करता है
इनपुट फंक्शन दो प्रकार से लिखा जा सकता है:
पहला x= input ब्रैकेट्स में message to display
दूसरा x= input ब्रैकेट्स में message to display strings
दूसरे उदाहरण में दूसरा आर्ग्युमेंट स्ट्रिंग है
अतः आउटपुट एक कैरेक्टर स्ट्रिंग है जो कीबोर्ड प्रयोग करके प्रविष्ट किया गया एक्सप्रेशन है
scilab कंसोल विंडो को खोलें और टाइप करें
x इज़ इक्वल टू input ब्रैकेट में डबल कोट्स में enter your age डबल कोट्स बंद करें ब्रैकेट बंद करें और एंटर दबाएं
टाइप करें 25 और एंटर दबाएं
अब टाइप करें > y इज़ इक्वल टू input ब्रैकेट में डबल कोट्स में enter your age डबल कोट्स बंद करें कॉमा दोबारा डबल कोट्स में लिखें string ब्रैकेट बंद करें और एंटर दबाएं
टाइप करें 25 और एंटर दबाएं
हम देखते हैं कि दोनों स्थितियों में इनपुट जो हमने कीबोर्ड से प्रविष्ट किया वो नंबर 25 था
अब वेरिएबल x और y के प्रकार को जांचते हैं
अब clc कमांड प्रयोग करके कंसोल को क्लियर करते हैं
हम यह दूसरे उदाहरण में दिए गए आर्ग्युमेंट string के उपयोग और महत्व को प्रमाणित करने के लिए कर रहे हैं
वेरिएबल के प्रकार को जाँचने के लिए अब टाइप करते हैं
> typeof ब्रैकेट्स में x और एंटर दबाएं
उसीप्रकार typeofy और एंटर दबाएं
आप अपने आप देख सकते हैं कि x में संचित पहला उत्तर कांस्टेंट प्रकार का है और
कमांड में सम्मिलित आर्ग्युमेंट स्ट्रिंग के साथ y में संचित दूसरा उत्तर स्ट्रिंग प्रकार का है
अब देखते हैं कि कंसोल पर प्रदर्शित आउटपुट को कैसे फॉर्मेट करते हैं
यह mprintf फंक्शन प्रयोग करके किया जा सकता है
mprintf फंक्शन साइलैब कंसोल पर डेटा को लिखता फॉर्मेट करता और बदलता है
यह printf फंक्शन के cकोडेड वर्शन के लिए एक इंटरफ़ेस है
अब इसके लिए एक उदाहरण देखते हैं कंसोल को खोलते हैं
टाइप करें> mprintf ब्रैकेट में कोट्स में टाइप करें at iteration परसेंट i कॉमा result is कोलन स्लैश n alpha is equal to परसेंट f कॉमा 33 कॉमा 0535 ब्रैकेट बंद करें
यहाँ परसेंट i %i के स्थान पर 33 दिखेगा और फ्लो की तरह परसेंट f %f के स्थान पर पॉइंट 535 0535 दिखेगा एंटर दबाएं
यह आउटपुट देगा at iteration 33 result is alpha is: equal to 0535000
कंसोल को क्लियर करें अब एक अन्य उदाहरण देखते हैं
mprintf ब्रैकेट खोलें कोट्स में value of x is equal to परसेंटेज d is taken as a constant कॉमा while value of y is equal to परसेंट s is taken as a string कोट्स बंद करें कॉमा x कॉमा y ब्रैकेट बंद करें
उपरोक्त उदाहरण में परसेंटेज d %d वेरिएबल x में संचित कांस्टेंट डेटा को प्रविष्ट करने में उपयोग होता है और
परसेंटेज s %s वेरिएबल y में संचित स्ट्रिंग डेटा को प्रविष्ट करने में उपयोग होता है एंटर दबाएं आप आउटपुट देखते हैं
अब save और load कमांड्स के प्रयोग की चर्चा करते हैं
गणना के बीच में scilab को छोड़ने के लिए और
बाद में जारी रखने के लिए टाइप करें save thissession
यह thissession नामक फाइल में सारे वेरिएबल्स की वर्तमान वैल्यूज़ को सेव करेगा
इस फाइल को एडिट नहीं किया जा सकता
यह बाइनरी फॉर्मेट में है
जब अगली बार साइलैब शुरू करते हैं तो टाइप करें load thissession
और वो गणनाएं वहाँ से पुनः शुरू की जा सकती है जहाँ आपने छोड़ी थीं
save और load फंक्शन्स के उद्देश्य निम्न हैं:
save कमांड बाइनरी फाइल में scilab के सारे वर्तमान वेरिएबल्स को सेव करता है
यदि वेरिएबल एक ग्राफ़िक हैंडल है तो save फंक्शन सारे सम्बंधित graphics_entities परिभाषा को सेव करता है
फाइल या तो इसके पाथ या पहले दिए गए डिस्क्रिप्टर से दी जा सकती है
save ब्रैकेट में filename फाइलनेम द्वारा परिभाषित सारे वर्तमान वेरिएबल्स को फाइल में सेव करता है
save ब्रैकेट में fd डिस्क्रिप्टर fd द्वारा परिभाषित सारे वर्तमान वेरिएबल्स को फाइल में सेव करता है
savefilenamexy या savefdxy केवल नामांकित वेरिएबल्स x और y को सेव करता है
अब save और load कमांड्स के उपयोग को स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण देखते हैं
कंसोल पर वापस जाते हैं अब दो मेट्राइसेस मानिये a और b को परिभाषित करते हैं
> a = eye ऑफ़ 22 और एंटर दबाएं
टाइप करें b=ones ऑफ़ a और एंटर दबाएं
clc कमांड प्रयोग करके कंसोल को क्लियर करें अब टाइप करें
save स्पेस matrix डैश a डैश b
या इसे निम्न प्रकार भी लिखा जा सकता है:
save ब्रैकेट्स में कोट्स में matrix डैश a डैश b डॉट dat कोट्स बंद करें कॉमा a कॉमा b ब्रैकेट बंद करें और एंटर दबाएं
यह वर्तमान कार्यकारी डिरेक्टरी में बाइनरी फाइल matrix dash a dash b dot dat matrixabdat में वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को सेव करता है
आप इस बाइनरी फाइल की मौजूदगी को जांचने के लिए इस वर्तमान कार्यकारी डिरेक्टरी को ब्राउज़ कर सकते हैं
आप इसे यहाँ देख सकते हैं मैं फाइल ब्राउज़र को बंद करुँगी
अब फाइल को वापस वेरिएबल्स में लोड करते हैं
इससे पहले अब हम वेरिएबल्स a और b को क्लियर करते हैं
टाइप करें clear a स्पेस b और एंटर दबाएं
अब दोबारा जाँचते हैं कि ये वेरिएबल्स वास्तव में क्लियर हो गए हैं या नहीं
> a
b
अब load कमांड प्रयोग करके बाइनरी फाइल्स से इन वेरिएबल्स a और b में वैल्यूज़ को दोबारा लोड करते हैं
टाइप करें: load ब्रैकेट में क्वोट में matrix डैश a डैश b डॉट dat कोट्स बंद करें कॉमा कोट्स में a कॉमा कोट्स में b ब्रैकेट बंद करें और एंटर दबाएं
अब वेरिएबल्स a और b में वैल्यूज़ को जाँचते हैं कंसोल को क्लियर करें
टाइप करें >a और >b
आप देख सकते हैं कि वेरिएबल्स में वैल्यूज़ दोबारा लोड की जाती हैं
इस tutorial में हमने सीखा
* input कमांड प्रयोग करके इनपुट फंक्शन
* mprintf कमांड प्रयोग करके आउटपुट को फॉर्मेट करना
* save फंक्शन
* load फंक्शन
दर्शाये link पर उपलब्ध video देखें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
स्पोकन ट्यूटोरियल टीम:
spoken tutorials का उपयोग करके कार्यशालाएं चलाती है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
अधिक जानकारी के लिए कृपया conatct@spokentutorialorg पर लिखें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
इस मिशन पर अधिक जानकारी
आय आय टी बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद